नमस्कार gchempaint में aromatic molecular structures के इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे
cyclohexane cyclohexane को cyclohexane cyclohexene में बदलना
cyclohexene cyclohexene को benzene benzene में बदलना
benzene ring के hydrogen को अन्य परमाणु से बदलना
benzene ring के hydrogen को परमाणुओं के समूह से बदलना
दो अणुओं को merge करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको gchempaint केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए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
मैंने एक नयी gchempaint application खोल ली है
सबसे पहले display area पर एक six membered six membered cycle जोड़ें
add a six membered cycle tool पर click करें
display area पर click करें
add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
cycle के प्रत्येक कोने पर दो bonds जोड़ें
bonds को इस प्रकार स्थित करें कि कोई भी दो bonds आपस में न टकराएं
ऐसा करने के लिए bonds पर click करें और उचित स्थान पर खीचें
cycle के सारे कोनों पर carbon परमाणु प्रदर्शित करें
किसी एक कोने पर right click करें
एक menu प्रदर्शित होता है
atom चुनें और फिर display symbol पर click करें
इसी तरह cycle के सारे कोनों पर carbon परमाणु जोड़ें
bonds पर hydrogen परमाणु जोड़ने के लिए keyboard पर h दबाएं
add or modify an atom tool पर click करें
bond की सभी स्थितियों पर click करें
दोबारा देखें कि कोई दो hydrogens एक दूसरे के ऊपर न आ जाएँ
प्राप्त structure c6h12 cyclohexane cyclohexane है
structure को copy और paste करें
ctrl + a दबाकर structure को select करें
ctrl + c दबाकर structure को copy और ctrl + v दबाकर paste करें
अब दूसरे cyclohexane cyclohexane structure को cyclohexene cyclohexane में बदलें
इरेज़र tool पर click करें
प्रत्येक संलग्न carbon परमाणुओं से एक hydrogen bond हटायें
add a bond or change the multiplicity of existing one tool पर click करें
फिर डिलीट किये हुए hydrogen bonds के बीच वाले bond पर click करें
एक double bond बनता है
प्राप्त structure cyclohexene cyclohexene c6h10 है
अब cyclohexene cyclohexadiene को cyclohexadiene cyclohexadiene में बदलें और फिर benzene benzene में
निश्चित कर लें कि current element carbon है
इरेज़र tool पर click करें
प्रत्येक संलग्न carbon परमाणुओं से एक hydrogen bond हटायें
add a bond or change the multiplicity of the existing one tool पर click करें
फिर डिलीट किये हुए hydrogen bonds के बीच वाले bond पर click करें
दूसरा double bond बनता है
प्राप्त structure cyclohexadiene cyclohexadiene c6h8 है
इसी तरह तीसरा bond बनाने के लिए इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं
प्राप्त structure benzene benzene c6h6 है
एक नियत कार्य की तरह
cyclobutane cyclobutane का structures बनायें और इसे cyclobutadiene cyclobutadiene में बदलें
cyclopentane cyclopentane और इसको cyclopentadiene साइक्लोपेंटाडाइन में बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
आगे benzene benzene के derivatives के बारे में सीखते हैं
भिन्न chemical compounds प्राप्त करने के लिए benzene benzene में hydrogens को functional समूहों से बदल सकते हैं
वो functional समूहों जो hydrogen को बदलते हैं निम्न हैं
fluoro fluoro f methyl ch3
नाइट्रो no2हाइड्रॉक्सी oh और
अन्य
display area पर दो बार benzene structure को copy और paste करें
benzene structure को select करने के लिए select one or more objects tool पर click करें
structures को copy करने के लिए ctrl + c दबाएं और paste करने के लिए दो बार ctrl + v दबाएं
पहले benzene structure में hydrogen को fluorine fluorine परमाणु से बदलें
keyboard पर f दबाएं
add or modify an atom tool पर click करें
hydrogen को fluorine से बदलने के लिए इस पर click करें
प्राप्त structure fluorobenzene fluorobenzene है
आगे दूसरे benzene स्ट्रक्चर में hydrogen को परमाणुओं के समूह से बदलें
add or modify a group of atoms tool पर click करें
किसी भी एक hydrogens पर click करें
देखें कि hydrogen एक टिमटिमाते cursor के साथ एक हरे box में बंद है
hydrogen को methyl समूह से बदलें
hydrogen को हटायें और type करें बड़ा c hऔर 3
display area पर कहीं भी click करें
प्राप्त structure methyl benzene methyl benzene है
तीसरे benzene benzene के hydrogen को nitro nitro समूह से बदलें
किसी भी एक hydrogens पर click करें
hydrogen हटायें और type करें बड़ा n o 2
प्राप्त structure nitrobenzene नाइट्रो बेंज़ीन है
अब benzene ring benzene ring में carbon की स्थितियों को देखें
benzene benzene में छः carbon परमाणुओं को 1 से 6 तक numbered दिए गए हैं
hydrogen को बदलने से पहले सभी छः स्थितियां समान हैं
जब hydrogen को functional समूह के द्वारा बदला जाता है तो ring की electron density बदलती है
electron density प्रतिस्थापी पर निर्भर करती है
benzene के एकलप्रतिस्थापित compound को निम्न स्थितियों पर बदला जा सकता है:
* 1 और 4 para स्थिति
* 2 और 6 ortho स्थिति
* 3 और 5 meta स्थिति
अब methylbenzene मिथाइलबेंज़ीन structure को किसी अन्य methyl समूह के साथ बदलते हैं
add or modify a group of atoms tool पर click करें
ring के दूसरे hydrogen की स्थिति पर click करें
हरे box में hydrogen को methyl समूह से बदलें
type करें बड़ा c h 3
नया प्राप्त structure orthoxylene है
nitrobenzene nitrobenzene को carboxy carboxy समूह के साथ बदलें
ring के चौथे hydrogen की स्थिति पर click करें
हरे box में hydrogen को carboxy carboxy समूह से बदलें
type करें बड़ा c o o h
नया प्राप्त structure paranitrobenzoic acid है
प्रक्रिया को अनडू करने के लिए ctrl + z दबाएं
nitrobenzene nitrobenzene के तीसरे hydrogen की स्थिति को nitro समूह से बदलें
hydrogen हटायें और type करें बड़ा n o 2
नया प्राप्त structure metadinitrobenzene है
यहाँ एक नियत कार्य है
benzene के सात structures बनायें निम्न के किसी भी एक hydrogens को बदलें:
पहले benzene में bromo के साथ
दूसरे benzene में iodo के साथ
तीसरे benzene में hydroxy के साथ
चौथे benzene में amino के साथ
पाँचवें benzene ethyl के साथ
छटे benzene के दो hydrogens को भी chlorine परमाणु से बदलें
सातवें benzene की पहली और चौथी hydrogen की स्थितियों को carboxy समूह से बदलें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
अब दो structures को merge करना सीखते हैं
अब एक नयी window खोलते हैं
निश्चित कर लें कि current element carbon है
add a four membered cycle tool पर click करें
दो बार display area पर click करें
select one or more objects tool पर click करें
दूसरे structure पर click करें
इसे खींचें और पहले structure के पास लायें
ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें
structures को select करने के लिए ctrl + a दबाएं
merge two molecules tool सक्रिय हो जाता है
अणुओं को merge करने के लिए merge two molecules tool पर click करें
merging देखने के लिए structures को खींचें
अब सारांशित करते हैं कि हमने क्या सीखा
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा
cyclohexane को cyclohexane में बदलना
cyclohexene को benzene में बदलना
benzene के hydrogen को fluoro methyl nitro और carboxy समूह के साथ बदला
दो four membered साइकिल merge करना
यहाँ एक नियत कार्य है
दो benzene अणुओं को merge करें
दो pentane pentane structures को मर्ज करें
cyclopentane cyclopentane और cyclohexane cyclohexane अणुओं को मर्ज करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस link पर उपलब्ध video देखें